सामने एक काँच का दरवाजा दिखाई दे रहा है घर के बाहर खिड़कियाँ व दरवाजे भी लगे हुए है।

इस चित्र में एक कमरा दिखाई दे रहा है जहाँ पर मशेरी पे एक व्यक्ति लेटा हुआ दिख रहा है साथ में एक डॉक्टर भी इलाज करता हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक फूलों की दुकान नज़र हा रही है जहाँ पर सामने बहोत बड़ी माला भी टंगी हुई दिख रही है सामने कुछ लोग भी फूल खरीदते हुए नज़र हा रहे है।

सामने कुछ लोहे की जंजीरे भी दिखाई दे रही है। चित्र मे पीछे एक ट्रक भी नजर आ रहा है।

सामने एक मूर्ति भी नज़र हा रही है स्विमिंग पूल के अंदर कुछ लोग भी नहाते हुए दिखाई दे रहे है।